कक्षा के छोटे बच्चे बैठे हुए हैं।

किसी मंडी की दिखाई दे रही है जो नयी अनाज--

की दा रॉयल ब्रेकर्स एंड रेस्टोरेंट के--

सारी ट्रॉफी रखी हुई हैं।

जो कि पिज्जा बिन के नाम से है यहां बहुत--

टेस्टी पिज़्ज़ा मिलता है।

जो कि बाहर से बहुत--

कार एजेंसी की दिखाई जा--

कार्य में लगे हुए है।

यह फोटो किसी पार्क की दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारे नारियल के पेड है।

यहां शादी के लिए लहंगे --

है जो की नाग पा--